क्रिश्चियन्स है जिन्होंने सफ़ेद कलर की साड़ी पेहेन रखी हुई है।

कि कितना हरा-हरा सा दिखाई दे रहा है गम --

काफी अच्छी लग रही है यहाँ पर चार पाँच व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

लाइटे जल रही हैं। काफी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। स्टूल रखा हुआ है।

यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है बाल काटने की और कांच के अंदर व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

क्लास की दीवालों का कलर है। पंखे चल रहे हैं। लाइट जलती हुई दिखाई दे रहे हैं दिवालों पर।

मैंन रोड हैं और उधर पे एक ऑटो रिक्शा है। तीन चार व्यक्ति बाहर --

मेन रोड दिखाई दे रहा है मेन रोड के साइड में कोई मोटर-साइकिले स्कूटी दिखाई दे रही हैं लाइटे जलती हुई नजर आ रही हैं।

और यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है और बहार मोटर-साइकिल भी खड़ी हुई है। एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है आपको।

यहाँ पे कई अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के मशीने है अलग-अलग एक्सेसरीज़ करने के लिए।

यहाँ पर एक खाने का ठेला दिखाई दे रहा है मतलब जो चाट बनाने का ठेला --

और यहाँ पे स्लाइड और भी झूले दिखाई दे रहे हैं। दो तीन यहाँ पर --

यहाँ पर एक व्यक्ति दाढ़ी काटते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर बाल कटिंग होती है। वो शॉप है।

और यहाँ पर बड़े आपको पेड़ की पत्तियां दिखाई दे रही हैं जोकि काफी सुन्दर लग रही है। कुछ खम्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह बाहर गार्डन का मतलब का काफ एक गार्डन है जहां पर बाहर सजावट हो रखी है जो कि काफी सुन्दर है जो लाइटे पर्दे --